प्रवेश द्वार से प्रवेश कर रहे हैं जो कि चकाचौंद लाइट से भरा हुआ है और एक टकला इंसान बाजू में खड़ा हुआ है जिसका टकला प्रकाश से चमक रहा है।

यह इमेज प्राणायाम करते हुए दिखाई दे रहा है जिस में भी एक स्तंम्भ भी बना हुआ है जिसमे कुछ--

यह एक दुकान है खिलौनों की दुकान जिसमें बच्चों के खिलौने दिखाई दे रहे हैं और इस दुकान का नाम चाइना गेट है संभवता यह दिल्ली की दुकान होगी तभी इसका नाम चाइना गेड रखा गया है और यहां --

यहां दो गधे दिखाई दे रहे हैं जो सफेद कलर की एक बनी हुई पिंजरे जैसे नुमा में है तथा उसके पास एक पत्थर भी है।

यह प्रकृतिक सौंदर्य दिखाई दे रहा है जिसमें एक तालाब के बीचों बीच एक पेड़ दिखाई दे रहा है जिसका छवि परछाई भी जल पर दिखाई दे रहा है और एक बड़ा सा विशाल नुमा पेड़ --

जिसके आजू-बाजू में आम के पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

म जल से मछलियों को उस निक मछलियों का शिकार करते हुए फोटो खीचा है तथा बहुत बड़े-बड़े इमारत दिखाई दे रहे है आस पास में --

यह एक आंगनवाड़ी जैसा प्रतीत हो रहा है जिसमें सर्व शिक्षा अभियान --

एक समान आकृति में सजे हुए दिखाई दे रहे हैं तथा एक तालाब या झील जिसके आसपास में लोगों की शहरों की बस्ती बसी हुई है यह एक सौंदर्य और मनमोहक दृश्य है।